यहाँ पर मूर्तिया बनी हुई हैं और झूले लगे हुए हैं यहाँ पर लाईट के खंभे लगे हुए हैं।

प्लेट कलर की ब्रेन्च पर रखा हुआ हैं केक की कटिंग --

लगी हुई है और सामने एक बैनर लगा हुआ है दुकान के बहार

परदे लगे हुए है नीचे टेबल डली हुईं हैं और ब्रेन्चे डली हुईं है।

काँच लगे हुए है और एक पंखा लगा हुआ है लाइट का बोर्ड लगा हुआ हैं।

चेयर पर पन्नीया चढ़ी हुई है और यहां पर --

यहाँ सुबय हो रही है और यहाँ पर --

यहां पर मच्छियों कि दुकान खुली हुई है। यहां पर --

पर बोक्सो के ऊपर चपल जूते रखे हुए हैं।

यहाँ पर एक एस.बी.आई. बैंक खुला हुआ है जिसमें नीले कलर से --

हॉल व्हाइट कलर से बना हुआ है और यहां पर रेड कलर से पट्टीयां बनी हुई हैं और यहां पर कोई --